सामने एक मॉल का दुकान है।

प्याली कप स्टैंड चेयर बैग --

एक लड़का जिम कर रहा है।

एक आदमी हाथ ऊपर करके खड़ा है।

घर सामने नजर आ रहा है।

लोटस का आकृति दिख रही है।

बहुत सारी स्त्रियां खड़ी हैं।

बच्चे अपने हाथ में कॉपी एंड बुक्स लेकर बैठे हुए हैं।

लेडीज सिस्टर भी हो सकती हैं।

सामने बहुत से आदमी खड़े हैं।

रूम में एक सोफा दिख रहा है।

सामने दो चेयर दिख रहा है।

सामने एक गणेश भगवान की मूर्ति है।

सामने बहुत सारा आदमी खड़ा है।

सामने एक महिला ब्लू रंग की पर्स लेकर खड़ी है।

सामने एक बिल्डिंग दिख रहा है।

सामने एक बिजली का खंबा भी दिख रहा है।

सामने मीटी डिख रहा है।

सामने सिस्टम दिख रहा है दो सिस्टम रखे गए हैं टेबल पर।

ली अ लीची का स्वाद मीठा होता है।

कुछ लीचियां टांगी गई हैं।

गाय के बगल में दो बाइक लगी हुई है।

सामने एक वार्ड्रोब भी दिख रहा है एक बैग भी है।

मस्जिद का गेट बहुत बड़ा है।

सोफे परपंद्रह-बीसआदमी बैठ सकते हैं।

सामने घर बनाने की काम चल रही है।

सामने बहुत सारे घर बने हुए हैं।

बुक का दुकान बहुत काफी छोटा सा लग रहा है।

पेट्रोल पंप पर दो लड़के और एक लड़कियां हैं।

सामने एक स्कूटी पर एक लड़का बैठा हुआ है।

सामने वेलकम का बोर्ड लगाया गया है।

आप यहां चाइनीज फूड और फास्ट फूड ले सकते हैं।

पार्किंग में बहुत सारे लाइट लगे हुए हैं।

यहां बहुत सारे आदमी खड़े हैं।

ऑफिस में बहुत सारे चेयर लगे हुए हैं।

एक ए_सी भी दिख रहा है।

घर के बगल में एक पाइप --

एक बालकोनी भी दिखाई दे र--

दो कॉफी रखा गया है।

दोनों कॉफी गरम-गरम है।

सामने चार चक्के गाड़ी लगे हुए हैं बगल से एक लड़का क्रॉस कर रहा ।

यह पार्क यह इमेज किसी पार्क से लिया गया है।

शाम का समय है सूर्यास्त होने को है।

ऊपर बहुत सारे वाइट वाले बल्ब लगाए गए हैं।

सामने एक जेन्ट्स आदमी हैजो कि स्टाफ है वह सारे कपड़े को सरियाकर अच्छे से जगह पर रखने का काम कर रहा है।

सामने एक झूला दिख रहा है।

पार्क में बैठने के लिए दो सीटें बनाई गई हैं।

एक बड़ा सा घर भी दिख रहा है।

सामने नीचे रोड पर एक कार जा रही है।

सामने बहुत सारी मछली पड़ी हुई है।

पोस्टल पर फॉर्म लिखा हुआ है।

सामने एक मूर्ति रखा हुआ है मूर्ति राधे-कृष्ण का है।

सामने एक बैठने के लिए चेयर भी रखा हुआ है।

सामने एक फ्रिज भी रखा गया है।

एक पार्टी वाला रूम है।

जिम का साइज बहुत बड़ा है।

सामने एक पाइप भी दिख रहा है।

लोहे का ग्रिल दिख रहा है।

सामने बंसी बिहार का रेस्टोरेंट है।

सामने बहुत सारे आदमी चेयर पर बैठे हैं।

सामने एक बाइक भी लगा हुआ है।

सामने एक लड़की और भी खड़ी है।

सामने एक घर भी दिख रहा है।

सामने एक बड़ा सा पेर है।

एक बड़ा सा गेट दिख रहा है।

थेले पर बहुत सारे बोड़े रखे गए हैं।

सामने बहुत सारे साइकिल भी दिख रहा है।

सामने एक साइकिल भी दिख रहा है।

सामने बहुत सारे फैन लगे हुए हैं।

सामने एक काउंटर दिख रहा है।

सामने लाइट बल्ब दिख रहा है।